ऊपर लिखा है मोबाइल एस एक्सेसरी ।

बारिश परी हुई है अभी भी बदल मौसम--

ये पशु पक्षी का अभ्यारण्य है घूमने का जगह यहां पे लिखा है जंगल ।

और यहां पर एक पोस्टर लगा है जिस पे लिखा है टाऊन बाजार।

और यहां पे वी_आई_पी की वी_आई_पी तरह शीशे सारी लगे हुए हैं छत पे।

और लेटने के लिए बेंच और एक जगह सीट बनाई गई है।

बच्चों के जंप करने के झू झूले लगे हुए--